जालियाँ और खिड़की दिख रही हैं चैनल लगी हुई हैं। बहुत सारी बाइक और ऐकटीवा दिख रहें हैं और एक अंकल जी भी दिख रहें हैं जो अंदर की तरफ जा रहें हैं।

कुछ इसमें से लड़कियाँ हैं और कुछ लड़के भी हैं और यहाँ पर रेड और व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ --.